ये कोई ऑफिस है यहां यह सफेद कलर का बना हुआ है।

और उनमें छोटे छोटे पेड़ भी लगे हुए हैं।

इस बगीचे में गुलाब के पेड़ लगे हुए हैं छोटे छोटे से।

और उसके पास में ही फिगर मेंटेन पेंटिंग लगी है।

और यहां पर लाइट वाली लडियाँ भी लगी हैं।

और इस जगह पर पेड़ भी लगे हुए है।